बाउन्ड्री हो रही है। बाउन्ड्री पर डिजाइन मड़ी हुई हैं।

इसमें जंगल दिखाई दे रहा है एक लाइट --

काफी लाइट्स लगी हुई है। टेबल --

जंगल में एक झरना है।

टावर जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

ये हमें मार्केट जैसा प्रतीत हो --

वाइट कलर की कार है उसके पास में एक --

ट्रे ब्लैक कलर की ट्रे है।

लगी हुई है। बाहर कि साइड ऐसा प्रतीत होत --

नियाले दिखाई दे रहा है जिसके बहार --

और ये कुछ प्रोग्राम जैसा दिखाई दे रहा है।